डांस कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं।

केबल ओबल और अंदर में कुछ और भी रखा हुआ है।

ये ऑफिस का दृश्य नजर आ रहा है जहां पे तीन लोग खड़े हैं।

जो ऑरेंज कलर का है यहां पे दो शटर भी दिख रहे हैं।

यहां पे कुछ लोग सामान बेचने और खरीदने का काम कर रहे हैं।

एसे ढेर सारे बोड़े उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक बहुत बड़ा पाइप दिख रहा है।

यह पे सामने में एक गेट भी बनाया है जो वाइट कलर का शीशे का गेट नजर आ रहा है।

ले के चलता हुआ नजर आ रहा है।

ढका हुआ है यहां पे ढेर सारे टाइल्स नजर आ रहे हैं सामने और दीवाल में भी पूरी तरह लगी हुए हैं।

बोड पूरा पीला कलर का नजर आ रहा है।

तीन चार गाय नजर आ रही है जो एक ब्लैक कलर की है और वाइट कलर की है।

कुछ और भी नजर आ रहा है जिस पर ये रखा है उसका कलर ऑरेंज रेड और बहोत सारे ऑरेंज --

इस तस्वीर मे दो कुर्सी लगाई हुई है।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

और दाना चरने वाला एक रेड कलर का यहां पे बनाया हुआ है जिसमें छोटे-छोटे दाने दिख रहे हैं पीले-पीले कलर के--

यहां पे सारी मुर्गा मुर्गी का कलर --

यहाँ पे एक खिड़की बनाया हुआ है जिनसे रोशनी आ रही है।

येलो है कोई रेड है और नीचे में बहुत प्यारी प्यारी दो दो कुर्सी लगाई हुई है।

यहां पे कचरा तो बहुत ज्यादा ही फैलाया गया है।

इसके बगल में ढेर सारे पौधे भी लगाए हुए हैं गमले में।

उसके आस पास में छोटे छोटे--

यहां पे हर एक पे बोतल भी रखा हुआ है।

खुले में प्लांट भी लगाए हुए हैं।

फ्रिज भी रखा हुआ है यहां पे।

मूर्तियां जिसमें फूल चढ़े हुए हैं किसी में माल नजर आ रहा है।